और पर यहां पर कुछ लाइट लगाई गई है।

और यहां पर एक झंडा भी रखा है जोकि--

यहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

एक लड़का और बाकी लड़कियां हैं।

खड़ी है मंदिर को सजाया गया है।

र यहां कुछ सीढ़ियां है दुकान के बाहर--

और यहां पर एक औरत बैठी हुई--

आस पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक घर हैं।

और यहां एक कुर्सी लगाई--

और यहां कुछ कपड़े रखे गए--

यहां पर माता रानी की झांकी निकाली जा--

यहां पर कुछ दरवाजे भी--